बिल्डिंग के पास भी हरियाली है।

यहां कलरफुल पौधे लगे हैं।

यह दुकान कांच की बनी है।

यहां पानी में लाइटिंग हो रही है यहां फब्बारे वाली लाइटिंग हो रही है।

उस पर तेल की कैन लगी हुई है।

यह कलरफुल लग रहा है।